और सबसे बाहर दो लोग खड़े हुए है जिनके हाथ में भाला है और दोनों साइड् बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं ।

यहाँ एक तरफ वॉल पे ड्राइगन और दूसरे तरफ मिक्की_माउस का स्टिकर लगा है।

--और एक फैन भी है और एक टेबल है जिसपे बिरियानी रखा हुआ है हुए एक ग्लास रखा हुआ है।

और यहाँ पे चार लोग बैठे हुए है और एक आदमी खड़े है और सभी के सामने म्यूज़ पर इंस्टूमेंट रखे हुए हैं ।

एक आदमी ढ़ोलक बजा रहे है और एक आदमी बैंजो बजा रहे --

ये रेस्टॊरेंट का किचन है जिसके अंदर एक रेड टी-शर्ट में एक लड़का खड़ा हैं ।

ये स्टेशनरी शॉप है यहाँ पे एक आदमी खड़े हुए है।

यहाँ एक तालाब है जिसके अंदर एक लड़का खड़ा है और सामने में एक पहाड़ हैं ।

एक रेड कलर का शटर है जिसके नीचे एक पोस्टर है जिसपे भारतीय_स्टेट _बैंक लिखा हुआ है ।

और गुफा के इंट्रेंस पे एक छोटा गड्ढा भी है।

ये एक बड़ा -सा हॉल है इसके वॉल का कलर सफ़ेद हैं ।

ये बस स्टॉप है यहाँ पे चार बस खड़े है जिनमे दो बस ब्लू कलर की है एक सफ़ेद और एक लाल रंग की है।